लिबरे ऑफिस writer के spoken tutorial में आपका स्वागत है – इस tutorial में हम writer के बारे में सीखेंगे
writer में भिन्न टूल बार
एक नए document को और एक मौजूदा document को कैसे खोलें
एक document को कैसे सेव करें और
writer में document कैसे बंद करें
लिबरे ऑफिस writer लिबरे ऑफिस suite का एक word processor घटक है
यह माइक्रोसॉफ़्ट ऑफिस सूट के माइक्रोसॉफ़्ट वर्ड के बराबर है
यह एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है अतः इसका किसी प्रतिबंध के बिना आदानप्रदान संशोधन तथा वितरण कर सकते हैं
चूँकि यह free है इसलिए इसका आदानप्रदान बिना किसी license शुल्क के किया जा सकता है
लिबरे ऑफिस suite के साथ शुरुआत करने के लिए आप या तो microsoft windows 2000 और इसके उच्च वर्ज़न जैसे कि ms windows xp या ms windows 7 का उपयोग कर सकते हैं या आप gnu/linux operating system का उपयोग कर सकते हैं
यहाँ हम उबंटू लिनक्स 1004 ऑपरेटिंग सिस्टम तथा लिबरे ऑफिस सूट 334 वर्ज़न का उपयोग कर रहे हैं
यदि लिबरे ऑफिस suite संस्थापित नहीं किया है तो synaptic package manager का उपयोग करके writer संस्थापित कर सकते हैं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
विस्तृत निर्देश लिबरे ऑफिस suite के पहले tutorial में मौजूद हैं
याद रहे writer का संस्थापन करते वक्त complete option का उपयोग करें
यदि आपने लिबरे ऑफिस सूट का संस्थापन पहले ही कर लिया है आपको लिबरे ऑफिस राइटर मिलता है जब आप स्क्रीन के ऊपरी बाएँ कोने में applications ऑप्शन क्लिक करते हैं और फिर office तथा libreoffice ऑप्शन पर क्लिक करते हैं
विभिन्न लिबरे ऑफिस घटकों के साथ एक नया डाइलॉग बॉक्स खुलता हैलिबरे ऑफिस का उपयोग करने के लिए text document ऑप्शन पर क्लिक करें जोकि सूट का एक वर्ड प्रोसेसर घटक है
मुख्य writer window में यह एक रिक्त document खोलेगा
writer window में विभिन्न tool bars हैं जैसे कि टाइटल bars
menu bar standard टूल bar
formatting bar तथा status bar जिसमें ज्यादातर उपयोग में as वाले options हैं जिन्हें हम आगे tutorials में सीखेंगे
चलिए tutorial की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं writer में एक now document कैसे खोलें
standard toolbar में new icon पर क्लिक करके आप एक नया document खोल सकते हैं
या menu bar में file option पर क्लिक करें
और फिर new option पर क्लिक करें और अंत में text documentऑप्शन पर क्लिक करें
आप देखते हैं कि दोनों ही मामलों में एक नई writer window खुलती है
अब editor area में कुछ type करें
तो हम type करते हैं resume
जब document लिख कर हो जाए भविष्य में उपयोग करने के लिए उसे सेव करें
इस file को सेव करने के लिए menu bar से file पर click करें
और फिर save as option पर click करें
screen पर एक dialog box खुलेगा जहाँ आपको name field में आपकी file का name enter करना होगा
तो आपकी file का name resume enter करें
name field के नीचे save in folder है
field जहाँ पर आपको folder का name enter करना होता है जिसमें आपकी सेव की हुई फाइल होती है
save in folder field से down arrow पर click करें और desktop ऑप्शन पर click करें
आप menu में folders की सूची देखते हैं जहाँ आपकी file सेव कर सकते हैं
अब desktop option पर click करते हैं desktop पर file सेव होगी
आप browse for other folders पर भी click कर सकते हैं
और folder चुन सकते हैं जिसमें आपको अपना document सेव करना है
अब dialog box में file type option पर click करें
यह आपको file प्रकार यानि file type के options या file extensions बताता है जिसमें आप अपनी file सेव कर सकते हैं
लिबरे ऑफिस writer में default file type है odf text document जोकि dot odt extension प्रदान करता है
odt open document format या odf format के लिए स्वरुप है जोकि word document के लिए open standard मानक है जिसे विश्व स्तर पर स्वीकार किया गया है
यह भारत सरकार की open standards इन egovernance policy द्वारा भी स्वीकृत है
dot odt text documents में सेव करने जो कि लिबरे ऑफिस writer में opened की जा सकती है के अतिऱिक्त
आप अपनी file को dot doc और dot docx format में भी सेव कर सकते हैं जो कि एमएस office ms office word program में opened की जा सकती है
एक और लोकप्रिय file extension जो अधिकतर programs में खुलते हैं वह है dot rtf जोकि rich text format है
अब odf text document option पर click करें
आप file type option के करीब प्रदर्शित odf text document तथा कोष्ठक में dot odt देख सकते हैं
अब save button पर click करें
यह आपको writer window पर ले चलता है जिस पर टाइटल bar पर आपका दिया हुआ filename और extension होगा
अब आप writer window में text document लिखने के लिए तैयार हैं
ऊपर चर्चा किए format के अलावा writer documents को dot html में सेव कर सकते हैं जोकि एक वेबपेज format है
यह उसी तरह से किया जाता है जैसे कि पहले समझाया गया है
तो menu bar में file option पर click करें और फिर save as option पर click करें
अब file type option पर click करें और फिर html document पर click करें और कोष्ठकों में openoffice dot org writer option
यह option document को dot html extension देता है
save button पर click करें
अब dialog box के ask when not saving in odf format option में check करें या क्लिक करें
अंत में keep current format option पर click करें
आप देखते हैं कि document dot html extension के साथ सेव हुआ है
standard tool bar में export directly as pdf पर क्लिक करके document को pdf format में भी export कर सकते हैं
पहले जैसे स्थान चुनिए जहाँ आप सेव करना चाहते हैं
ऐसा आप menu bar में file option और फिर export as pdf option पर क्लिक करके भी कर सकते हैं
dialog box जो नज़र आ रहा है उसमें export पर click करें और फिर save button पर click करें
एक pdf file बन जाएगी
चलिए file पर और फिर close पर क्लिक करके इस document को बंद करते हैं
अब हम देखेंगे कि लिबरे ऑफिस writer में एक मौजूदा document कैसे खोलें
resume odt document खोलते हैं
एक मौजूदा document खोलने के लिए ऊपर मेन्यूबार में file पर click करें और फिर open option पर click करें
आपको screen पर एक dialog box दिखाई पड़ता है
यहाँ उस folder को खोजें जहाँ आपने अपने document को सेव किया है
तो dialog box के ऊपरी बाएं कोने में छोटे pencil button पर click करें
इसमें name है type a file name
यह location bar नामक एक field opens करेगा
यहाँ आपको जो file का name चाहिए उसे type करें
तो हम file का name resume टाइप करते हैं
अब सूची में जो file का name resume दिखाई पड़ता है उसमें resume dot odt चुनें
अब open button पर click करें
आप देखते हैं कि resume odt file खुलती है
बारीबारी से ऊपर toolbar में open icon पर क्लिक करके तथा आगे की प्रक्रिया को उसी तरह करके आप एक मौजूदा file को खोल सकते हैं
आप dot doc और dot docx extensions वाली files को writer में खोल सकते हैं जोकि microsoft word द्वारा इस्तेमाल किया जाता है
अब आप देखेंगे कि फाइल में बदलाव कैसे करें और उसे उसी फाइल name से सेव कैसे करें
अतःपहले बाएं mouse button पर क्लिक करके resume text को चुनें फिर इसे text पर ड्रैग करें
यह text को चुनेगा और चिन्हांकित करेगा अब बायाँ mouse button छोड़ दीजिए
text अभी भी चिन्हांकित होना चाहिए
standard toolbar में bold icon पर click करें अतः text bold हुआ है
text को पेज के मध्य में लाने के लिए टूल बार से centered icon पर click करें
आप देखते हैं कि text पेज में मध्य में संरेखित हुआ है
अब text का font size बढ़ाते हैं
toolbar में font size field में down arrow पर click करें
ड्रॉपडाउन menu में 14 पर click करते हैं
अतः text का font size 14 हो जाता है
font name field में down arrow पर click करें और फिर फॉन्टनेम के रूप में undotum को चुनें
toolbar में save icon पर click करें
आप देखते हैं कि बदलावों के बाद भी file उसी file से so हुई है
जैसे ही आप document सेव कर लेते हैं और उसे बंद करना चाहते हैं
मेन्यूबार में file menu पर click करें और फिर close option पर click करें यह आपकी file बंद करेगा
हम लिबरे ऑफिस writer के spoken tutorial के अंत में आ गए हैं संक्षिप्त में बताते हैं कि हमने क्या सीखा
writer तथा उसमें विभिन्न toolbars देखे
writer में नया document तथा मौजूदा document कैसे खोलें और कैसे document सेव करें
कैसे document बंद करें
व्यापक assignment नियतकार्य writer में नया document खोलें
practice odt name से सेव करें
यह टेक्स्ट लिखें this is my first assignment फाइल सेव करें टेक्स्ट को रेखांकित करें
फॉन्ट साइज़ को बढ़ाकर 16 कर दें फाइल बंद करें
निम्नलिखित link पर उपलब्ध video spoken tutorial project का सार देता है
अगर अच्छी bandwidth नहीं है तो आप download करके देख सकते हैं
हम spoken tutorial का उपयोग करके workshops कार्यशालाएँ आयोजित करते हैं जो online test pass करते हैं हम उन्हें certificates भी देते हैं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
spoken tutorial talktoa teacher project का हिस्सा है
जिसे भारत सरकार के एमएचआरडी मंत्रालय के राष्ट्रीय साक्षरता mission ने आई सी टी ict के माध्यम से समर्थित किया है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
यह स्क्रिप्ट सकीना द्वारा अनुवादित है तथा आई आई टी बॉम्बे की ओर से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेता हूँ धन्यवाद